यहाँ चार पाँच गाड़ी है और एक गाड़ी खड़ा हुआ है सभी भी गाड़ी महँगे गाड़ी है।

यहाँ एक बैल है और यहाँ बैल घाँस खाते हुए दिख रहा है मुझे बैल है या गाय है मुझे पता नहीं है पर काला कलर का यहाँ पे है।

स्वादिस्ट रहता है इसको खाने से विटामिन हमें मिलता है।

इमरजेंसी में भी यहाँ से पैसा निकाल सकते है।

ये गाड़ी धोने का शोरूम है यहाँ बहुत से कुछ-कुछ मशीन वशिन लगे हुए है गाड़ी गाड़ी के लिए।

यह शाम के समय का फोटो है लगभग-लगभग तीन चार बजे शाम का है और रोशनी और सूरज का किरण--

इसके सामने तरफ कुछ दूकान वुकान ठेला-वेला लगे हुए है और एक साइकिल से गुजर रहा है और उसके कपड़े से ऐसे पता चलता है की वो कोई पोस्टमैन है।

यहाँ बच्चे लोग नृत्य कर रहे है बहुत सारे बच्चे हैं या हो सकता है पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी के लिए नृत्य कर रहे है।

यहाँ स्कूटी है और यहाँ लाल कलर का स्कूटी है और सफ़ेद कलर का स्कूटी है और--

सरकारी भवन है हो सकता है हॉस्पिटल वुस्पिटल होगा किसी शहर का दो तीन छत का है और कांच-कांच का लगा हुआ है खिड़की दरवाजा दिख रहा है।

जगह हे बैठने के लिए कुछ चेअर बेयर खुर्सी -उर्सी भी हे कुछ पेड़ भी हे छोटा और बड़ा और उधर कुछ दो तीन लोग भी दिख रहे है घूमने के लिए उन लोग ही आये हे और मौसम सुहाना लग रहा हे।

झरना जैसा लगा हुआ है इसको बांध भी बोला जाता है शायद और पानी बहुत अधिक बह रहा है।

और यहाँ इसको मंडी के नाम से भी जाना जाता है जहाँ सब्जी मिला जाता है उसे मंडी खा जाता है अउ कुछ फल-वल का भी दुकान है कब होगा मिर्ची बहुत सुंदर है।